और सामने एक लाल कलर की कुर्सी भी रखी हुई है और एक सफेद कलर की टेबल ।

सामने एक लाल कलर का बोर्ड है एक पीले कलर का बोर्ड है एक येलो कलर का बोर्ड है और एक ग्रीन कलर --

इस चित्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि--

यह एक चित्र है इसमें दिखाई दिया जा रहा है कि--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

टेबल के ऊपर एक सफेद कलर का बक्सा रखा हुआ है।

की दो चेयर भी रखी गई है और एक बड़ा सा सोफा भी रखा गया है।

कई सारी खाने की सामग्री है और--

और एक कुर्सी है जो खाली है और एक टेबल पर डी_जे रखा हुआ है।

इसमें एक सफेद कलर का ब्रिज है और--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

और कई सारे लोग उसे देख रहे हैं और--

और अस्पताल में शायद से कुछ जरूरी बात चल रही है और पास में गुब्बारे लग--